बैठने के लिए टेबल है कंप्यूटर है और सीढ़ी है गमला है लाइट है।

और मंदिर मतलब सीढ़ियों के इधर खड़ा होके सेल्फी ले रहा हैं ऐसा लग रहा हैं।

ये लगा हुआ है क्या बोलते हैं? दरवाजा यहां पे रोड है झाड़ दिख रहा है बिल्डिंग के विंडो खिड़की--

पेड़ पौधे हैं जमीन है धूप लग रही है और यहां पे कमाओ शांत रहो--

यहां पे एक ऑटो रिक्शा खड़ा है और ग्रीन कलर का झाड़ है।